और एक बहुत ही खूब सूरत पंडाल है और आगे भी बहुत सारे लोग है ज्योंकि आगे अपना देखने के लिए जा --

ये बस स्टैंड है यहाँ पे बहुत सारी बस है जो कि --

अ यहाँ बहुत सारे बलून भी लगे हुए है और बहुत सारी खुर्सिया भी है।